इसीलिए हम आप हीरो कंपनी से बोले है कि हीरो --

आपलोग तो क्रिकेट के भगवान का नाम जानते होंगे।

अपने पुरे कैरियर में से सौ सेंचुरी मार चुके हैं।

काम यानी छठ प्रयोग करने के लिए आते है यहां पे रंग बिरंगे भरे--